ये एक ये एक रूम हैं यहाँ पे बाइक खड़ी हुई हैं बाइक को सुधार रहे हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं यहाँ पे --

ए य और एक हाथ में अंदर दवाइयाँ दे रहा हैं और उसने ब्लू कलर का मास्क लगा रखा हैं सामने शोकेस बना हुआ हैं उसमें बहुत सारी दवाइयाँ --

ऊपर बॉल रखी हैं लाइटिंग लगी हुई हैं नीचे टेबल चेयर रखी हुई हैं उसमें सॉस रखा हुआ हैं टिशू पेपर रखे हुए हैं और ब्लैक कलर की चेयर ----

ये एक दुकान की पिक हैं जहाँ पर लकड़ी का बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं ।

आदमी है जिसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और लकड़ी की कुर्सियां--

ये एक कैफे की पिक है यहां पे रेड कलर की टेबल लगी हुई है और यहां पे दो आदमी बैठे हुए हैं जिन्होंने काफी ली हुई है।

आ रहे हैं और आदमी ने ब्लैक कलर वाइट कलर की शर्ट --

ये सिंक की शॉप हैं यहाँ पे बहुत सारी सिंक रखी हुई हैं वॉशबेसिन लगे हुए हैं ।

और पेंट की अह बकेट भी रखी हुई है और पन्नी का लगा हुआ।

ऊपर पेड़ दिख रहा हैं साइड में लाइट का पोल बना हुआ हैं जिसमें वायरिंग जा रही हैं बहुत सारी --

बिल्डिंग बनी हुई हैं ब्राउन कलर की और वाइट कलर का पेंट हो र --

ये एक अ मॉल टाइप का हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं खाने की बिस्किट्स हैं कोल्ड्रिंक हैं फ्रूटी हैं ।

ये दिन का टाइम हैं यहाँ पे बहुत बड़ा पुल बना हुआ हैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं ।

ये बाहर का सीन हैं यहाँ पे एक शटल सी लगी हुई हैं कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं ।

पर आसमान नीला हैं और छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं ।

जिन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई हैं ब्लैक कलर की चप्पल पहनी हुई हैं और पीछे ब्लैक कलर का वाइट कलर की वॉल आ रही हैं और उस पेट पेंट --

ये एक रूम टेबल पे बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई हैं जिसमें अलग-अलग तरह के चित्र बने हुए हैं ।

और पीछे बिल्डिंग बनी हुई हैं इसमें बहुत सारी विंडो बनी हुई हैं और र दो ब्लैक कलर की बुलेरो खड़ी हैं एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई हैं।

प्याज आलू नींबू बंद गोभी तोरई सेब तराजू का बाट रखा हुआ हैं केले रखे हुए हैं मूली ।

ये पानी का सीन है यहैं पे बहुत सूखी हुई झाड़ लगी हुई हैं और इसके अंदर बतख तैर रही हैं ।

ये एक शेड पड़ी हुई हैं यहाँ पे बहुत सारे लोहा रखा हुआ हैं ।

ये जॉनसन बाथरूम का पिक हैं यहाँ पे --

पिंक बहुत सारे नि शावर लगे हुए हैं कुर्सी पड़ी हुई हैं एक टेबल लगी हुई हैं ।

और एक सेल्व बना हुआ हैं जिसमें सिंक रखी हुई हैं उसमें टैप लगा हुआ हैं ।

ये एक किराने की शॉप है यहां पे बहुत सारे किराने का सामान रखा हुआ है रेड कलर का फ्रिज रखा हुआ है ऊपर लाइटिंग लग रही है।

ये एक क कमरा सा बना हुआ हैं लेकिन ऊपर शेड नहीं हैं इसके सीमेंट की वॉल बनी हुई हैं और लोहे का एक गेट लगा हुआ हैं ।

अंदर बहुत सारे ईटे रखे हुए हैं एक चारफाई पड़ी हुई हैं ।

और पीछे साइड बिल्डिंग बनी हुई है और साइड में --

और साइड में येल्लो कलर का पेज हो रखा हैं ऊपर फैन लग रहा हैं और अंदर साइड सामान रखा हुआ हैं ।

ये यहाँ पे कुछ पैकिंग के सामान रखे हुए हैं कुछ वाइट पैकिंग में और कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर की पैकिंग रखी हैं ।

इ एक दिल्ली शाही कबाब की डिनर का रेस्टोरेंट का पिक हैं जहाँ पर बोर्ड लगा रहा हैं ।

यह एक बहुत बड़ा एरिया हैं जहाँ पे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ हैं ।

लेडी की पिक लगी हुई हैं और जिसमें लिखा हुआ हैं ओनली फॉर लेडीज लेडीज का स्पेशल डिस्काउंट साथ ही उसमें लिखा हुआ हैं ।

पीछे बिल्डिंग बनी हुई हैं और क्लीन करके प्लांट्स लग रहे हैं एक --

लेडी सुंदर बैठी हुई हैं और चेयर और टेबल रखी हुई हैं लकड़ी की टेबल हैं ।

बिल्डिंग मंदिर सा आ रहा हैं और लाइटिंग का बड़ा सा पोल लगा हुआ हैं एक आदमी जा रहा हैं फैम --

एक छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं ईट पड़ी हुई हैं तीन र्र्कर्सियां लगी हुई हैं और एक शेड पड़ी हुई हैं सिमेंटेड की --

अ एक डमी रखी हुई जिसमें हार पहना --

एक रूम सा हैं यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं एक टीचर खड़ी हुई हैं जो इनको पढ़ा रही हैं ।

एक टेबल चेयर रखी हुई साइड में प्रिंटर रखा हुआ हैं एवर एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग --

शेल्फ बनी हुई हैं जिसमें लगा हुआ हैं और पीछे साइड एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा हैं और फोल दिख रहा हैं लाइट का जिसमें वायरिंग जा रही हैं ।

बांडल भी लगी हुए हैं तरह-तरह तरह की लाइटें लगी हुई हैं एक टेबल फैन पंखा लगा हुआ हैं ।

सीलिंग फैन पंखा लगा हुआ हैं और र वाइट कलर का फ्लोर --